और आसमान में बादल भी नजर आ रहा है।

सामने एक व्यक्ति भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर सामने यह सब्जी मार्केट दिखाई दे रहा है।

इस इमेज़ में यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है जहां पर बेड लगा है।